इस फोटो से हमें ये पता चलता है की ये जिम की फोटो है|

ये फोटो से हमें ये पसाच पता चलता है की ये जिम की फोटो है और यहाँ बहुत सरे लो जिम करने के लिए आये है|

इस फोटो मैं हाथी और पुराने ज़माने के पिलर और घोड़े के मंजिस देख सकते है|

इसके सामने स्कूतियो का पोस्टर लगाया गया है|

इस फोटो मैं हमें क्रिकेट दिख रहा है

इस इमेज मे दूल्हे और दूल्हे के माँ-बा आंटी लोग बैठे हुए है|